बहोत सारी मिट्टी है पेड़ पौधे है।

कुर्ते हैं और जींस टॉप वगैरा--

फीमेल के ग्यारमेंट्स हैं जो काफी सारे हैं।

यहां पर एक बड़ा सा बाज दिख रहा है।

खुला नीला आसमान दिख रहा है सभी व्यक्ति धोती कुडता --

बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं।

यहां पर खुला आसमान दिख रहा है पेड़ है बिल्डिंग है बहोत सारी--

और बड़े बड़े फेस वॉश क्रीम का लग रहा है।

यहां पर एक आदमी खड़ा है वेह आदमी हाथों में हाथ डालकर खड़ा है।

यह कोई धर्मशाला का निर्माण हो रहा है।

यहाँ बड़े बड़े दरवाजें लगे हैं।

यहां कुछ लोग खड़े हैं।

कुछ आदमी इधर उधर जा रहे हैं।